मछलियाँ ये सब हैऔर डिजाइन किया गया मोर जो काफी आकर्षक है। यहाँ पे (पर) संगीत की प्रैक्टिस कराई जाती है अलग तरह का संगीत सिखाया जाता है।

ये आयरन कर रहे हैं यहाँ पे काफी सारे कपड़े रखे हुए हैं।

और एक दुकानदार बैठा हुआ है और एक खड़ा है।

सब्जी की मंडी और पीछे स्टोर है। जिसमें किराना स्टोर और ये औरत जा रही है जिनके हाथ में एक झोरा है। मास्क लगाई हुई है।

ये फसल हैं और यहाँ पे एक दो बादी बड़ बड़े बड़े पेड़ भी हैं ऊपर आसमान हैं उसमे चिड़ियाँ उड़ती हैं सबसे अच्छा दृश्य हैं ये।